और एक काउंटर भी है काउंटर के ऊपर कुछ फाइल्स ही पड़ी हुई--

वाइट रंग की है और दूसरी ऑरेंज रंग की--

रूम सा लग रहा है जैसे कि यहां पर अंदर कुछ सोफे पड़े हुए हैं और--

पार्क लग रही है पारक के अंदर--

होटल के बाहर रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा हुआ है।

टेबल के ऊपर कुछ कागज पड़े हुए हैं बच्चे पढ़--

मुझे एक मछली मार्केट लग रही--

ये एक मार्केट सी बनी हुई है।

और एक टीचर भी खड़ी हुई है जिसने व्हाइट रंग की ड्रेस पहनी हुई है।

कमीज़ पेहनी हुई हैं वाइट सी धारियों--

यहां एक बहुत खुलासा कमरा नजर आ--

जहां पर दो बाइक लगी हुईं हैं और उसके पीछे--

पिछे हरे हरे पेड़ नजर आ रहे--